सारे लोग हैं जो कि ब्लू कलर के आसन के ऊपर अ हाथ दे करके आ आधा-अधूरा लेटे हुए हैं जिन्होंने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना है।

चार तला बिल्डिंग है जो व्हाइट कलर का है जिसकी खिड़की में ब्लू कलर है सामने गेट ब्लैक कलर का है जिसके ऊपर में गोल सा है जिसमें लिखा ब्लैक कलर का है ऊपर आसमान ग्रीन बैगनी है।

एक दुकान है जिसकी कबार्ड कांच की लगी हुई है सामने मे कुछ लड़के लोग खड़े हुए हैं नीचे मे एक औरत बैठी हुई है ब्लू कलर का चादर ओढ़ के पाँच --

बड़े बड़े से पहाड़ है बीच मे पानी बह रहा है जो ग्रीन कलर का है एक ब्लू कलर का कुछ रखा हुआ है दूर मे आसमान दिख रहा है व्हाइट ।